दूसरा व्यक्ति काउंटर पर हाथ रखकर अपने फोन में लगा हुआ--

व कुछ छोटी लड़कियां भी ह--

इसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है।

और सामने एक व्यक्ति ने रेड ब्लैक कलर की चप्पल पहनी हुई है।

चित्र में केवल हाथ ही नजर आ रहा है।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

पीछे एक टेबल है टेबल पर वाइट कलर का कुछ रखा हुआ है।

ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है।

उसने अपने हाथ से माउस पकड़ा हुआ--

इनमें से एक कुर्सी के ऊपर बैग रखा हुआ है।

और उनके पीछे दो कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं।

साइड में एक बाइक भी खड़ी है।

साइड में यहां पर बहुत सारे पेड़ खड़े हुए--

ऊपर से सूरज की किरने पड़ रही हैं।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

सामने एक कुर्सी है एक टेबल पड़ी हुई है।

उसने ब्लैक कलर का बनियान पहना हुआ--

उसके पीछे ब्लू कलर की टी शर्ट में एक लड़का खड़ा हुआ है।

सामने दूर एक टेबल व कुर्सी पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

सामने एक पेट्रोल पंप है।

उस पर एक व्यक्ति है जो की स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर लिखा हुआ है यूनियन बैंक ।

ऐ_ टी_म के में ए_सी लगी हुई है वाइट कलर की।

यहां पर दो शीशे के गेट हैं।

एक बच्चे ने अ रेड कलर का टोपा पहना हुआ है।

पंखों का कलर ब्लैक है।

जिसके बाहर एक ब्लू कलर का कैंपर रखा हुआ है।

और आइने के जस्ट सामने एक मशीन पड़ी हुई है।

नीचे बैठी हुई औरत के फेस पर भी ब्लर है।

जिसका ढक्कन ऊपर से खुला हुआ है।

जिसमें से कुछ चूड़ियों के डब्बे हैं।

जिसकी ग्रील पीले कलर की है।

यहां पर एक तिरंगा लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हुई है।

सामने बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं।

जिसमें से कुछ रूमाल्स हैं।

पोस्टर पर ओल्ड स्कूल जिम लिखा हुआ है ब्लू कलर से।

सामने बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

और यह ब्लैक कलर की नाल पर गड़े हुए हैं।

साइड में दो खंबे खड़े हुए हैं।

वे खंबे सपष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।

सामने बहुत सारे चाबी व पाने रखे हुए हैं।